और जिसने नीला कुर्ता पहना है पास में खड़ा है पीछे एक सरबाला है जिसने पगड़ी पहनी हुई है।

पीली और लाल चांदनी से अलग डेकोरेट किया गया है पास में छोटी से पार्क और छोटे छोटे पेड़--

इस तस्वीर में पीछे ए एक व्हाइट क कलर की कार है।

लाइट कलर उसने टी शर्ट पहनी है वो किसी जिम का दिख रहा है जैसे लड़का जिम में है और अपने सर पे ये तेल बेच रहा--

फुल वोट्स का एक स्टीकर लोगो लगा हुआ है और ब्लू एंड व्हाइट कलर के बैलून लटके हुए हैं चिपकाए हुए हैं।

कपड़े बॉक्सेस में पीछे द्वार के में रखे हुए हैं कुछ टेबल में एक--

इस तस्वीर में एक इवेंट हो रहा है फंक्शन है जिसमें--

उसने बाल व्हीलचेयर ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है बाहर काले रंग की थार लगी हुए है कार है।

इस तस्वीर मुझे एक नजर आ रही है जो जंगल के बीच में है आसपास काफी बड़े बड़े दरख़्त जंगल हैं।

अलग अलग तरह के कपड़े पहने है के सभी क्रिश्चियन है एक जवान लोग--

इस तस्वीर में एक गार्डन बना हुआ है जिसमें साइड पे एक सड़क जा रही है और साइड के--

इस तस्वीर में एक वाटर पार्क है जिसमें एक एक बड़ा पेड़ लगाया है साइट पे एक चेयर भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक ब्यूटी पार्लर का अ ध की दुकान है ऊपर बहोत बड़ा सैलून का पोस्टर लगा हुआ है।

जो चैन वैन डाली हुई है उनके साइड पे खंभा खड़ा है और काफी झूले वगेरा भी लगे हुए है पानी की टंकी भी है स्विमिंग पुल भी बना हुआ है।